साइड में बोरा में कुछ सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक ऑटो है और एक फोर व्हीलर है फोर व्हीलर का दरवाजा खुला हुआ है।

दीवार पर कुछ झाड़ियां है एक आदमी के हाथ में एक प्लास्टिक है जिसमें समान है।

दूर दूर में बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ पत्थर भी हैं।

इस मकान के सीलिंग मे बहुत सारे लाइट्स लगे हुएं हैं।

एक चेयर लगा हुआ है उसके सामने एक टेबल है जिस पर एच_पी लिखा हुआ है।

इस फोटो में दो बैग भी दिख रहे हैं।

यह एक बहुत बड़े हॉल का फोटो है जिसमें काफी सारे पिलर हैं।

एक ऐ_सी भी लगा हुआ है।

नांव में बहोत सारे आदमी भी है।

बहुत सारे ग्लास बर्तन भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में बहोत सारे आदमी भी है।

एक मकान का शटर भी दिख रहा है।

पंडाल के ऊपर बहोत सारी लाइट्स लगे हुए हैं और बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है जिस पर दो आदमी बैठा हुआ है।

दीवार से घिरा हुआ है दीवार में बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारा पर्दा लगा हुआ है।

गद्दा सा कलर सफेद है और गुब्बारे का कलर सफेद नारंगी और हरा है।